यह बहोत सारी मशीने रखी हुई है जो कुछ मशीन चालू भी है जिनमे हरे लाल नीली रंग-बिरंगे लाइट जली हुई है।

जिसके शर्ट का रंग हरा और गले में गमछा सफेद है और पास में अंग्रेजी मेडिकल दवाईया वगैरा लिखा हुआ है और एक पीले कलर का जनरेटर खड़ा हुआ है।

यह बस स्टैंड है जहां पर चार बसें खड़ी हुई हैं। बसों का कलर लाल सफेद हरा पीले कलर का हैं।